और ये किसी चीज की कंपनी लग रही है।

हैं नारियल भी नारियल के पेड़--

और एक बहोत बड़ा है और ये घर छोटा है।

खड़े हैं। बहोत बड़ा बोर्ड भी लगा है।

दिखाई दे रेहे है बहोत अच्छा नजारा दिख रहा है।

यह एक होटल नजर आ रहा है।

बहोत आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं लाल रंग का गलीचा भी सड़क पे बिछा हुआ--

छोटे बच्चे भी बैठे हैं आदमी भी पड़े हैं और आधे बैठे--

सबने नए नए कपड़े पहने हैं।

और कितनी अच्छी हरियाली दिख रही है।

यह बहोत सुंदर घर दिखाई दे रहा है।

और मैज कुर्सी भी रखी हैं।

ओ लाल रंग की सफेदी भी हो रही है।

और बहोत सारा सामान बिखरा--